--रह सकते है फ्रेश हो सकते है और यह का सुविधा ले सकते है और अच्छा क्वालिटी मे तेल मिलता है रेट भी सही मिलता है और अच्छी जगह है ये--

आप देख पा रहे होंगे के ये स्टेशन है और य यहाँ पे एक ट्रेन अभी रुकी हुई है और बहुत अच्छा स्टेशन है बहुत अच्छा देखने मे लग रहा है।

--सुविधा यहाँ पे है और कैन्टीन की भी सुविधा है और ऐसी-ऐसी व्यवस्था है सोने का रहने का सबकुछ का व्यवस्था यहाँ बाहर से ऑटो म-मिलता है सबकुछ मिलता जगह जगह के लिए--

यहाँ पे देख पा रहे होंगे की ये एक स्टेचू है और स्टेचू बहुत ही सुंदर जगह है घूमने वाली जगह है यहाँ पे जाके स्टेचू को एक बार नाम ले सकते है घूम सकते है देख सकते है बहुत ही अच्छा स्टेचू बना हुआ हैं और आस-पास बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है।

संत-संतुष्टि स्वीटस एंड चार्ट दुकान है जहाँ पे मिठाई चा ता समोसा चाट चाऊमीन सब कुछ मिलता है दही है दही नाश्ता का उत्तम प्रबंध है।

काफी देखने मे आकर्षित और सुंदर लग रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे की कितने मस्त--